यहाँ पर दो मूर्तियां दिखाई दे रही है एक लड़की की एक लड़के के है।

यहाँ पर दो ये घर दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद रंग का है जो काफी सारी --

एक ऑरेंज कलर का हरे दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक दोकान दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जो काले कलर के कुर्ते में है क पीले रंग की चुन्नी है और एक --

ग्रीन कलर की शर्ट में एक आदमी दिखाई दे रहा है उसने नीले रंग की कैप लगायी हुई है एक बनियान में दिखाई दे रहा है।